लड़का काले रंग की शर्ट पहना है सीढ़ियाँ हैं।

ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं।

पैर के साइड में कुछ पेड़-पौधे हैं।

बेड पर सफेद और ऑरेंज रंग की चादर बिछी है।

बेड के ऊपर ऑरेंज और सफेद रंग के कुशंस से--

गार्डन में लाल रंग के पौधे रखे हुए हैं।

चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है।

रेस्टोरेंट के बाहर नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक दुकान नज़र आ रही है दुकान में बहुत सारा सामान है।

कमरे की दीवारें पीले रंग की हैं और काले रंग की खिड़कियां हैं।

इस चित्र में हमें एक मार्किंग नज़र आ रहा है।

हरे रंग की टी-शर्ट और काले रंग की पैंट पहेने है।

जैकेट पहना है हाथ में एक कागज है सफेद रंग का।

कपड़ों की शोरूम नज़र आ रहा है।

चित्र में हमे एक सड़क दिखाई दे रही है।

और बाहर एक दीवार है दीवार के ऊपर पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

और मैदान में कुछ लोग खड़े हैं सामने एक लड़की खड़ी है लड़की लाल रंग का ड्रेस पहनी है।

चित्र में हमें एक मॉल नजर आ रहा है।

मॉल में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं मॉल के अंदर एक कॉफी शॉप है।

पार्क के अंदर बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं रंग बिरंगी झूले हैं।

सामने एक सूखा मैदान है मैदान में हरे रंग की घास है।

इस चित्र में हमें एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है हॉल में एक लाल रंग की कार है।

इस चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क पर बहोत सारे ऑटो रिक्शा है।

आसपास कुछ पेड़ हैं और नीला आसमान है।